ये तो क्लास रूम है क्लास रूममे टीचर है आ टीचर सबको इक्सप्लेन कर रहा है।

और वायर उपर से लेकर उधर से शक अ अ इस्री कर रहा है।

ये तो डॅम दिख रहा है उधर से पूरा पानी आ रहा है पानी वो पूरा कचरा कचरा है ये तो पानी तो अच्छा नहीं दिख रहा है।

ये तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है ये क्या है समज नहीं आ रहा ये तो बस स्टैंड तो नहीं होता है। मगर ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है।

ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड मे क्रिकेट खेल रहा है देखो सब लोग बहुत बड़िया क्रिकेट है ये देखो ये ग्राउंड तो बहुत आच्छा दिख रहा है उधर तो बाजु --